इसमें बहोत ढेर सारी और अलग अलग वैरायटी के--

इस रोड पे कुछ गाड़ियां चल रही हैं जैसे बाइक कार और बैलगाड़ी।

और इस मंदिर को सफेद टाइल्स से बनाया गया है इस मंदिर में फूलों से सजावट की गई है।

यह एक डॉक्टर का दुकान है इस डॉक्टर का नाम--

अंदर कुछ इंसान बैठे हैं अंदर लाल कलर की कुर्सियां रखी हुई हैं।

यहां कुछ बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं।

यहां पे कुछ बच्चे खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं।

और कुछ बड़े लड़के भी यहां एक्सरसाइज कर रहे हैं।